बड़ा सा बिल्डिंग है जो बिल्डिंग का रंग है पीला है और उस पे खिड़कियां लगी हुई है बहुत सारे जिस--

सफेद रंग के लाइट लगी हुई है सामने काउंटर पे एक आदमी खड़ा हुआ है दो आदमी बाहर खड़े हुए है जो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है एक दरवाजा लगा हुआ है जो हल्का सा खुला हुआ है।

आसमान में एक चन्द्रमा है जो सफेद रंग का दिख रहा है। बहुत अच्छा शोभित हो रहा है। और कुछ चोंगे लगाए गए हैं जो इधर दाएं-बाएं तरफ मुह है।